यहाँ पर हम देख सकते हैं की एक व्यक्ति नजर आ रहा है। जिसने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी है और उसके हाथ में फ़ोन नजर आ रहा है।

यहाँ पर हम देख सकते हैं की छोटे-छोटे पक्षी नजर आ रहे हैं जोकि सफ़ेद रंग के हैं।

सामने की तरफ हम देख सकते हैं कि एक तालाब दिखाई दे रहा है।

जो कि नाव चलाते हुए दिख रहे है। नाव के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ सामान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

यहाँ पर हम देख सकते हैं की पुरुष खड़े हुए दिखाई रहे हैं। पांच पुरूषों ने पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं की वे कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे हम देख सकते हैं कि गुब्बारोंसे सजावट की गई है। कुछ महिलाएं और पुरुष भी नजर आ रहे हैं।

एक गुजुर्ग आदमी सामने की तरफ चलता गया नजर आ --

यह एक होटल नजर आ रही है। हम देख सकते हैं सामने की तरफ सफ़ेद रंग की चार कुर्सी और एक काँच की टेबल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम देख सकते हैं की कई सारे लोग नीचे बैठकर व्यायाम करते हुए नजर आ रहे हैं।